कि यह एक मशीन्स की दुकान है जिसमें बहुत सी मशीनें रखी हुई हैं।

और बैलून भी लगी हुई है व्हाइट और पिंक कलर की बहोत सारी सिरप --

और यह दावा करता है कि यह इंडिया का नंबर एक रिक्शा ब्रांड है।

यह मंदिर बहुत ही अच्छी एवं सुकून देने वाली जगह है ये मैं यहां मैं कल ही इसे घूम के आया हूं।

अच्छी सी मुस्कराहट मार के ये नीले रंग की बस इन बच्चों में बांट--